एक चाय कॉफी की दुकान छे में चार आदमी खड़ा है एक आदमी चाय पी लिया--

एक बस खड़ी है बठीने एक लुगाई एक छोरी बेठी है।